यहाँ पर तीन बड़ा सा घर है एक ट्रेक्टर है ट्रेक्टर पीछे एक लकड़ी गड़ा है यहाँ पर टेबल है एक आदमी दिख रहा है दो बाइक है ऊपर मैं छोटा-छोटा और घर है यहाँ पर गिट्टी कुढाया है पूरा आसमान दिख --

वहाँ पर एक पूल दिख रहा है जहाँ पर है लम्बा सा पूल है जिस मै लोहे लोहे का लगा है नीचे मैं खम्बा बड़ा-बड़ा सा लगा है|

और पानी है कुछ घाँस-वास पौधे-औधे दिख रहे है पानी एक दम मतलहा हुआ है और खम्बे में से तार-वार खिंचा हुआ है बड़ा-बड़ा पेड़ दिख रहा--

ऐमे बड़का कस गेट दिखत हे गेट के बगल-बगल म हाता हवा है ओ पार का का लिखा हे एहू पार का का लिखा हे लोहा के गेट ए लोहा के जाली कस ऊपर म लगे हवे ओती बड़े-बड़े घर दिखत हे पेड़-पौधा दिखत हे अउ ऐमेर घांस-ऊस जगे-उगे हे उ दिखत--

और इधर मछली पालन के बिच में उपला है जैमे मछली पालन करथे अ पूरा एदे घास वास मन दिखाथे पूरा एदे भाटा मदे कोने नांव वाव लिखे हवे तीर मा उहो दिखाथे।